तस्वीर में रात के समय एक बिल्डिंग दिख रही है ।

मैदान पर एक आट ऑटो रिक्शा खड़ा है।

तस्वीर पौने दिन की है।

कार्यालय के सामने एक बाइक खड़ी है।

तस्वी में एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में गुलाबी लिली के फूलों से भरा एक बगीचा दिख रहा है।

फूल खिलने के विभिन्न चरणों में है।

कुछ पूरी तरह से खिले हुए हैं और कुछ अभी भी कली है।

फोटो पौने दिन की है।

सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है ।

सड़क पर कहीं गाड़ियां चल रही हैं।

तस्वीर में एक शांत और शांतिपूर्ण अहसास है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई गई है।

रेस्टोरेंट के अंदर बहोत सारे टेबल और कुर्सियां भी दिखाई दे रही है और साथ में दो ए_सी और एक टी_वी भी दिखाई दे रही है।

और कमरे में एक सफेद स्टफ भी है।

तस्वीर में एक गली दिखाई दे रही है जिसके दोनों ओर ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

ये दिन का समय है।

इमारत बड़ी और आधुनिक है जिस पर स्पष्ट रूप से सन लिखा हुआ दिख रहा है।

दुकान में कुछ लोग घूम रहे हैं और किताब भी देख रहे हैं।

इस तस्वीर में कुछ लोग आमने सामने बात करते हुए दिख रहे हैं।

लोगों ने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं और पीले रंग के टोपी पहने हुए हैं।

ऊपर बलूंस भी दिखाई दे रही है।